और यहाँ पर एक जल की धारा प्रवाहित होती हुई दिख रही है।

ब्रॉउन पट्टियाँ बनी हुई है यहाँ पर कुछ खिड़की दरवाजे भी दिखाई दे रहै हैं।

यहाँ पर एक नदी भी दिखाई दे रही है जिसमें जल प्रवाहित होते दिख रहा है।

जो सफ़ेद रंग से पेंटेड है और एक लाल झंडा भी लगा है यहाँ बड़े - बड़े पेड़ - पौधे भी लगे हुए है आसमान साफ़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बहोत सी सब्जियां रखी हुई है यहाँ पर हरी धनिया--

यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे लाल रंग की मैट बिछी है जिसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

जिस पर एक बॉडी बिल्डर की फोटो दिख रही है यहाँ पर सफ़ेद और काले रंग से गुब्बारों से सजावट की हुई है।

एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे कुछ लिखा है सफ़ेद दिवार--